यहां पे अभी बच्चे जो हैं पार्क में खेल रहे हैं और मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना --

इस कॉलेज के बच्चे जो है पार्क में ले रहे हैं और बहुत ही खुशी से पार्क में हैं झूम रहे हैं।

और अगर दूसरी तरफ हम नजर डालें तो हमें बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा डिजाइनर्स --

ये एक अदृश्य केक की दुकान का है जिसके अंदर हमें दो केक आइसक्रीम और ब्रेड दिखाई दे रही है।

फिशेज को एकदम सजा के रखे हुए हैं बेचने के लिए और बहोत ही भीड़ भाड़ वाला और शोर शराबे वाला इलाका लग रहा है।

जो व्यवस्थित किया गया है और बहोत ही आकर्षित और सुंदर लग रही है।

सेंट्रल स्टेशनरी की है जो एक होलसेल दुकान दिखाई दे रही है जहां पर बोहोत सारी कॉपी किताब स्टेशनरी का समान है।

जहां पे पीछे डेकोरेशन कर रखा है काफी जो है धरती से ऊपर एकदम स्टेज लगा रखा है।

ये फोटो एस_बी_आई बैंक का है जहां पे रंग बिरंगी लाइटें लगा रखी है और सजा रखा है।

ये फोटो एक कंस्ट्रक्शन एरिया की है जहां पे लोग कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं।